इसमें एक घर बना हुआ है जिस पे एक बैनर चिपका हुआ है जिस पर गोकुल कंप्यूटर लिखा हुआ है।

यह एक घर बना हुआ है जिसका रंग सफेद कलर का है और एक बैनर बना हुआ है जिस पर वि विज्ञान लिखा हुआ है।

पीछे एक रेलिंग बनी हुई है जिस पर सफेद कलर का पोस्टर लगा हुआ है एक खंभा बना हुआ लगा हुआ है जिस पर तार लगे हुए हैं।

सामने पीले कलर का एक स्कूल है जिसमें लाल कलर की पट्टियां बनी हुई है एक बाउंड्री बनी है जो पीले कलर की है उसे पर लाल कलर की पट्टी बनी हुई है नीचे भी एक लाल कलर की पट्टी बनी हुई है।

लाल कलर की इमारत बनी हुई है जिसके ऊपर एक सफेद कलर की पट्टी है पट्टी के ऊपर एक नसैनी रखी हुई है ऊपर बादल दिखाई दे रहे है।

सामने एक इंडियन ऑयल नाम का पेट्रोल पंप है एक ट्रेक्टर बना हुआ है जिसमें ट्रॉली है एक रिक्सा है जो काले कलर का है पीछे भी एक रिक्सा है।